कुछ नीला कलर दिखाई दे रहा है यहां सफ़ेद कलर की के ऊँचे खम्बे जैसे और बिल्डिंगे बनी हुई जैसी दिखाई दे रही है वो सिल्वर कलर की दिखाई --

यहां एक लोहे का गेट दिख रहा है वो आधे जाली जैसा दिख रहा है और सीढ़ी दिख रही है तीन जो काले कलर की दिख रही है उसके साइड में डोरी जैसी पड़ी है जो काले कलर की दिख रही है।

यहां कुछ लोग दिखाई दे रहे है एक लेडिस है जिस ने हरे कलर{ का ब्लाउज पहन रखा है सफ़ेद कलर की साड़ी पहन रखी है उस से आगे बहुत सारी मछलिया है। }

यहां बहुत सी किताबे दिख रही है यहां दुकान है जो किताब की दुकान है उसके आगे एक आदमी खड़ा हुआ है जिस ने काले कलर शर्ट और लोअर पहन उसने --

यहां कुछ लोग दिखाई दे रहे है और यहां पर बहुत सी कुर्सी दिखाई दे रही है सफ़ेद कलर की कुर्सी पर बहुत सारे लोग बैठे --

यहां कुछ लोग लड़किया दिखाई दे रही है जो खड़ी हुई है एक है जो कुर्सी पर बैठी हुई है और उन्होंने सिर पर जूड़ा बना रखा है और सफेद कलर का जगरा लगा रखा है।

यहां पहाड़ दिख रहा है जो धुंदला सा सफ़ेद और आधा हरे कलर का दिख रहा है और यहां तालाब है जिसमे पानी भरा हुआ है।

यहां बहुत सारे लोग दिख रहे है कुछ लोग बैठे हुए है और यहां कुछ फूल दिख रहे है जो पिले और ऑरेंज कलर के दिखाई दे रहे है और कुछ पत्ते जो हरे कलर के दिखाई दे रहे है और एक स्टूल दिखाई दे रहा है।

एक आदमी जो बैठा हुआ है उसने सफेद कलर की --

यहां बड़ा सा जालीदार गेट है और यहां लकड़ी का भी गेट दिखाई दे बना हुआ दिख रहा है और पिछली तरफ पोधे है जो काले और हरे कलर के दिखाई दे रहे हैं गेट के अंदर एक--